एने दूगो लोग खड़ा बा एकगो टोपी पहिनले बा | जोन फ़ोन से बतियाता आ दूसरी का आदमी मुँह में मास्क लगैले बा जहाँ खड़ा बा |

एगो मंदिर में फोटो वा ई मंदिर लाल कलर के बा ऊपर एगो गोल्डन कलर के--

इ एगो डॉक्टर के घर में एगो बा |